जिसमें एक में संतरा और किसी में सेब दिख रहे है सामने से।

पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप का नजारा है। जहा पर पेट्रोल --

इसे धूप से बचने के लिए बनाया गया है। कुछ गाड़ी और कुछ साइकिल खड़ी नजर आ रही है। सामने से --

रेलवे स्टेशन का नज़ारा जहाँ पर दिन में लीए फोटो है। जहाँ पर --

यहाँ पर कुछ आदमी सामने से दिख रहे हैं। बाते करते हुए नजर आ --

पीन्डरा रोड़ हाल्ट पीन्डरा रोड़ हाल्ट का ये नजारा --

ये खाली है। यहाँ पर किनारे - किनारे गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं।